और इस ब्रांड के दुकान के बगल में ए.टी.एम. दिख रहे हैं ए.टी.एम. भी है जो की एस.बी.आई. का भी ए.टी.एम. है और इसके कुछ बगल में एक इंडिया लैंड्स के नाम से शॉप रखी हुई है।

ये एक कार वर्कशॉप की फोटो ली गई है जिसका नाम मोहसिन मारुती वर्कशॉप के नाम से रखा गया है।

पीछे के तरफ कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है और कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

जिसमे कृष्ण भगवान की तस्वीर लगी हुई है ऊपर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो दिखाई दे रही है ।

ये एक लोहा गोदाम की फोटो ली गई है जहाँ पर कुछ छड़ रखे हुए हैं।